लग रहा है किसी मोल का है| और इसमें लग रहा की बहुत सरे चीज डेयरी डेयरी मिल्क मिलता है| और एक टीफीन रखा हु है| सीसा का ग्लास में रखा हुआ है| सब लाईट भि उप्पर जल रही है| नीचे पिला कलर का है|

एक हमें दिखय दे रहा है की खुरशी है| खुरशी के ऊपर घर है| घर लग रहा है नया न्य बन रहा है और पीछे घर बहुत सारे खली है।

फोटो में दिखाई दे रहा है की बहुत बड़ा ऑफिस है| कुर्सी का और यहा पे बहुत सारा सामान रखा है जो अलमारी अलमारी जेसा है टेबल जेसा है।

यह फोटो में दिखाई दे रहा है की बहुत बड़ी नदी है| नदी में लग रहा है निचे उप्पर पुल भी है| पुल के जो इधर दिखाई दे रहा है वो लोहा जैसा लगा हु है|

दिखाई दे रहा है की बहु बड़ा भीड़ है| और एक सडक है बहुत लंबी| जो सडक है और हरा भरा पेड़ भि है और ब्लैक कलर की भि लग रह है| ब्लैक एंड व्हाइट

और हरा-भरा भी पेड़-उड़ भी है पीछे लग रहा है कि ईटा-उटा रखा हुआ है और उसके पीछे भी पहाड़ उहार दिखाई दे रहा है देखने में दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

थोडा सा अति भी है| यहाँ से तार गया है| पोल भी है और देखेने में अ दृश्य अच्छा लग रहा--

गुदा जैसे में टेंगा हुआ रखा है| लग रहा है स्वेटर वुटर है और नेचे भी है।